में गेंदा का फूल दिख रहा है आम का पत्ता दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक गेट दिख रहा है जिस गेट के ऊपर में लिखा हुआ है युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा चार्या जनम शताब्दी द्वार जो की ये मुजज़फ्फरपुर में है ।

पन्नीक में कुछ ले जा रहा है और एक व्हाइट शर्ट वाला आदमी किसी से बात कर रहा है और एक बैग टांगे हुए आदमी कुछ देख रहा है।

नया ओपनिंग हुआ सैलून का फोटो है जिसमे गेंदा का फूल लगा हुआ है व्हाइट कलर का गुबारा लगा हुआ है और हरा कलर का गुबारा लगा हुआ है दो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं।